यहां पर बहुत सारे आदमी यह लैग पीस --

स्वादिष्ट लगते हैं खाने में ।

यह जामुन काफी सुन्दर लगता है खाने में बहोत सुन्दर --

यह होटल बहुत ही स्टैंडर्ड बन बना गया है।

बहुत ही बड़ी एक दुकान है।

ये गार्डन में बहुत से आदमी फूल तोड़ने के लिए आते हैं।

फूलों से सजी दी गई है यह स्टेज पर बहुत सारे आदमी है लड़का-लड़की भी बैठे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी पटरियां भी है ये पटरियां खाली है इस पटरी पर बहुत सारे ट्रेन चलती है यह ट्रोनो ट्रेनों में --

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं यहां पर।

यहां पर खाते भी खुलते हैं यहां लाइन बाई लाइन पैसे निकालने के लिए सभी आदमी यह बैंक के अंदर जाते हैं।